चेयर वेयर सब लगा है गाछ-उछ है बैठने का।

टाइल्स का काम करते हुए सभी मजदूर लोग --

रिक्शा मस्त लग रही है चमचमा रिया है।

ये एक जिम है और यहां पे --

यहां पे लगता हैं लत है और घर के पीछे लगा है कार --